यहां पर बहुत खूबसूरत पेड़-पौधे हैं हरे-भरे पेड़-पौधे हैं यहां पे एक ट्रेन है बच्चों की जो कि बच्चे घूम रहे हैं उसके अंदर अभी--

छोटी-छोटी मूर्तियां रखी हुई है यहां पे स्टील का भी लोटे वगैरह सामान रखा हुआ है यहां पे काफी ज्यादा--

अलग-अलग जगह पर रखी हुई है यहां पर लाइट भी बहुत ज्यादा है.

यहां एक शॉप है जिसका नाम तिलक साइबर कैफे है यहां पे--

एंड ऑनलाइन यहां पे फॉर्म भी फिल किए जाते हैं।

ऊपर भैया खड़े हुए हैं जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है पिंक कलर की टी-शर्ट ब्लू जींस और उन्होंने स्लीपर पहनी हुई हैं.

और रोड पूरा सोना है काफी ज्यादा पेड़ पौधे हरे भरे हरियाले--

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है।

फोटो स्टेट यहां पे स्टेशनरी आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान मिलता है बुक बाइंडिंग --

यहां पर धूप भी निकल रही मीटर वगैरह लगा हुए है लाइट के--

यहां एक डी मार्ट है यहां पे काफी ज्यादा लाइट्स एक पंखे वगैरह लगे हुए हैं हर एक सेक्शन में--

यहां पर रिसेप्शंस लिखा हुआ है डॉक्टर्स का रूम है यहां पे पंखे लगे हुए हैं तीन वाइट कलर के--

एक पंखा है जो कि रेड कलर का लगा हुआ है ये इस रूम में काफी ज्यादा स्टील की चेयर्स लगी हुई यहां स्टील की बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है एक टेबल है ब्लैक कलर का--

छोटी-छोटी चेयर्स वगैरह रखी हुई है जो रेड कलर की यहां पर एक बड़ा सा टेबल भी रखा हुआ है।

यहां पे पेड़ पौधे भी है धूप निकल रही है पत्थर ही पत्थर है पहाड़ी इलाका है यहां पे पीछे भी कुछ लोग है जो --

बोतल के साथ दो-दो कांच के गिलास रखे हुए हैं और कुछ सिर्फ ऐसे ही रखी हुए हैं यहां पर एक बड़े-बड़े दो जार रखे हुए हैं.

पीली पीली घास पड़ चुकी है पीला पीला लग रहा है पूरा पेड़ पौधे हैं जो कि पत्ती सूख के नीचे गिर रही हैं.

हम एक मैदान टाइप पे यहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी हुई है टू व्हीलर जिसका कलर ब्लैक कलर के टू व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं काफी --

इट की शॉप है जो को जोकि मीठे की शॉप है इसका नाम वन --

ईट शॉप लिखा हुआ हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों की यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगी हुई है जो इनके सब चीजें मिलती हैं जलेबी हे।

यहाँ एक रेस्टोरेंट है जोकि पूरा नॉन वेजिटेरियन चीज़ो --

रते आसपास पूरी जाली जाली की पूरी बाउंड्री की हुई है।

बहुत बड़ा पिलर दिख रहा है यहाँ पे वाइट कलर का पूरा वाइट कलर हो रखा है यहाँ पे पेड़ पौधे भी है खुला आसमान --

यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे डस्टबीन सिंटेक्स की टंकियाँ टब्स पाइ --

पाइप की चीजे हर तरह की चीजें यहाँ मौजूद हैं यहाँ पे --

यहाँ एक पहाड़ी इलाका है यहाँ पे आस पास का --

यहाँ एक ऑफिस है यहाँ पर बहोोत बड़ा एक का --

कंप्यूटर व लैपटॉप लगे हुए हैं बहोत सारे यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे बहोत खूबसूरत है।

यहाँ समुद्र है जोकि बहोोोत ज्यादा बड़ा समुद्र है बहुत गहरा पानी है इसमें --

खूबसूरत नजारा लग रहा है इस न इस नाव एक अम्म इस नदी में एक नाव है जिस पे --

यहाँ एक लेडीज के कपड़ों की शॉप है जोकि बहोत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की हुई शॉप है यहाँ पे --

एक लेडीज का बहुत खूबसूरत टंगा हुआ है आसपास भी काफी सूट्स से रखे हुए हैं यहाँ पे एक भैया बैठे हुए हैं ब्लैक कलर की चेयर पे --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाली जाली का गेट है बहुत बड़ा गेट है जोकि अभी ओपन है अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ --

बहुत खूबसूरत हरियाली है अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हरे भरे पेड़ पौधे --

को कोला के यहाँ पे वो लगे हुए हैं पूरे --

यह एक रूम है इसमें बहुत खूबसूरत --

कर रही है उसके हाथ के यहाँ जस्ट लाइट जल रही हैं।

बुक्स भी काफी है कैलकुलेटर पेंस वगैरह सब --

बक खड़ी हुई है रेड कलर की मंदिर की दो सीढ़ियाँ हैं जोकि ग्रीन कलर की हो रखी है।

लाइट वगैरा ही स्टाइल्स की टाइल्स की दीवाल ही इसकी पूरी टाइल्स की बनी हुई है दीवाल --

नीचे अंदर भी टाइल्स लगी हुई है एक्टिवा खड़ी हुई है बाहर कोई भइया गए है अंदर --

रूम में काफी ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं तिरंगे के दो दो दो--

काफी ज्यादा बहुत लाइट है राइट की काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट पड़ रहा है आइस के ऊपर बहुत खूबसूरत रूम लग रहा है ये --

बहुत तरह के अलग अलग वीवो के ब्रांड न्यू फोन्स रखे हुए हैं काफी ज्यादा वैरायटी रखी हुई हैं वीवो की या --

आ एक प्लेट है ब्लैक कलर की जोकि टेबल पे रखी हुई है इसमें ग्रीन कलर की च --

यहाँ पे कचौरी टाइप की रखी हुई है जिसमें दही --

इस रूम में कॉट पर्दे लगे हुए हैं जिनका पिंक कलरेंस पे पत्ती पत्ती की डिजाइने यहाँ पे एक सिलाई मशीन भी रखी हुई है उसमें वाइट कलर का धागा रखा हुआ --

यहाँ पे कुर्ते वगैरह फ्रॉक वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत बड़ा टेबल है काँच का यहाँ पे काफी ज्यादा कलेक्शन रखा हुआ है लड़कियों का --

यहां पे एक लाइट्स वगैरह भी काफी अच्छी लग रही है यहां पे ए_सी वगैरह भी लगा हुआ है यहां पे टाइल्स लगी हुई है वाइट कलर --

बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे कलेक्शन है गर्ल्स के लिए का --

उम्ममें एक टी_वी ही लगी हुई है टी_वी में एक समाचार वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे लकड़ी ही लकड़ी का पूरा फर्निचर बहुत खूबसूरत बना हुआ --

वाइट एंड ब्लैक डॉट की यहाँ पे टाइल्स लगी बी वाइट कलर हो रखा है यहाँ पे चेक्स चेक्स वाले--

बहुत लग रहा है ये रूम पीछे वाले रूम में भी लाइट वगैरह जल रही है अंदर सामान रखा हुआ है सेम फर्नीचर लगा हुआ है अंदर भी --